और यहाँ पे जो है मैदानी एरिया है।

केजीएम लम्बी रुट की बसे हैं।

जो भी पार्टी फंक्शन होता है।